पिक्चर देखने आते हैं।

एक वुड की वॉल भी दिखाई दे रही--

दो आदमी यहां पर काम कर रहे हैं उसने पर्पल रंग की शर्ट पहनी--

सब ने सर पर स्कार्फ लिया हुआ है।

करके कुछ लिखा हुआ--